इस जगह पे कुछ बनाने का काम हो रहा है। यहाँ जगह - जगह मिट्टी खनी हुई है और दो बड़े तगाड़े रखे हैं।

एक मेले का खंबा है।

में कही कही मिटटी का भाग भी दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान बिलकुल साफ़ नज़र आ रहा है।

और एक आधी दीवार नजर आ रही --

इस दृश्य में एक बड़ा सा मैंदान है मैंदान में कई सारे लोग कोई खेल खेल रहे हैं।

रेखा में कई वृक्ष लगाये गए हैं और छोटे-छोटे पौधे भी लगाये हैं। ये देखने मे बोहोत ही आकर्षक लग रहा है।

इस दृश्य मे किसी त्यौहार का आयोजन लग रहा है। इसमे कई लोग सर पे लाल रंग की टोपी लगाये हुए खड़े हैं।

ये इनकी छावनी नज़र आ रही है। पीछे कई बिजली के खंबे नज़र आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक बड़ी सी मछली को कई जगह से कटा दिखाया गया है।